आपका लैट्रिंग वगैरह वाला सामान सारा लगा हुआ है टॉयलेट का सकते हैं।

ये एक अं घर से फोटो खींचा हुआ है जिसके पास में रेलवे ट्रैक है।

ये किसी का भर घर बन रहा जहां पे देख सकते हैं।

और नीचे में ऐसे फर्श और उधर जाकर सीढ़ियां लगी हुईं है।